बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है और यहाँ पर एक सफ़ेद रंग टी शर्ट वाला एक आदमी ठेहरा हुआ है।

और यहाँ पर चार कार्मिक इस घर की बनाने के काम में पड़े हुए है।

हम यहाँ पर देख सकते है की हमें यहाँ पर एक बड़ा सड़क नजर आ रहा है इस सड़क के ऊपर के_एस_आर_टी_सी बस जा रहा है।

स्कुटर और उस बैंक के बगल में एक सफ़ेद रंग का कार भी नजर आ रहा है।

हम यहाँ पर देख सकते है की हमें यहाँ पर एक घर नजर आ रहा है जोकि अभी बन रहा है इस घर को अभी अभी छत डाला गया है।

हम यहाँ पर देख सकते है की हमें यहाँ पर एक घर की --